ईसाई वाले भाई लोग जा रहे उसका आस्था में लोग घुस रहे उन उनके द्वार पे अच्छा सा लोग भीड़ जमाते हुए दिया बारते हुए उनका आस्था बहुत ज्यादा है।

भाई लोग कटाने के लिए आ सकते हो वही पे दुकान--

कितना अच्छा काटे हैं भाई का डिज़ाइन बाल --

और बाएं पिछे तरफ बैठ कर मछली को ध्यान में देख भी रहे है और अच्छा से मछली का बेच कर अपने पैसे का इंतजाम करते--

भाई लोग टेबल में बैठे हुए कुछ चित्र बनाते हुए अपने प्रैक्टिकल के लिए अपने स्कूल में--

एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हैं और कुछ बना रहे हैं।

भाई का डिजाइन अच्छा हैं इतना सैलून में जाकर बाल कटाए हुए हैं स्टाइल वाला आर्मी जैसा लग रहा हैं।